ये है एक कपड़ो की दुकान का दिश्य है जिसमे बोहोत --

यह एक मैदान का दृश्य है जिसमें हरी हरी घास बहोत अच्छी लग रही है उगी हुई और यहां पर--

पास में कुछ पेड़ पोधे भी उगे हुए है और दूध में --

इसमें कुछ निकला जा रहा है ।

और कट्टों में पैक करके उनको रखा जा रहा है ।

यह एक सब्जी की दुकान का दृश्य है जिसमें --

दूकान में अलग अलग तरह कि सब्जी रखी हुई है जिसमे कि गोभी--

यह एक फूलो की दूकान का दृश्य है जिसमे अलग अलग और बोहोत खुबसूरत --

फूलो के बूके बनाकर रखे हुए हैं जो की बहुत ही सुन्दर लग रहे है और यहाँ पर पांच से छह--

चीयर्स लगी हुई हैं और मेज लगे हुए हैं और मेज पर --

कुछ खाना भी लगा हुआ है और इसमें बहुत अच्छी--

यह एक मंदिर के बाहर का दृश्य है जिसमें--

अलग अलग तरीके कि बहोत सारी चीजे डेकोरेशन कि--

ये एक मैदान का दृश्य हैं मैदान के पास में एक सड़क बनी हुई हैं और इसमें हरी हरी घास उगी हुई हैं ओ--

यहाँ पर काफी सारी दुकाने भी लगी हुई है।

अम्म बेड के पास में बिजली का प्लग भी--

कुछ पिंक कलर के हैं कुछ व्हाइट कलर के हैं कुछ ब्लू कलर के हैं और बहुत ही अलग अलग--

ब्लैक कलर कि शर्ट पहनी हुई है और उसके आस पास --

छोटे छोटे पेड़ पोधे लगे हुए हैं और--

यह एक सड़क का दृश्य है सड़क के दोनो तरफ--

फ्रिज में अलग अलग तरीके की बहुत अच्छी मिठाईयाँ र लगी हुई है जिसमें रसगुल्ले बर--

और भी अलग तरीके कि बहोत सारी मिठाइया लगी हुई हैं काउन्ट --

दूध से बनें सा सभी उत्पाद मिलते हैं।

और मॉडर्न बुक शॉप कि दूकान है।

और यहाँ पर कुछ बच्चे भी है जो नहा रहे हैं स्विमिंग पूल में और इन्जॉय कर रहे हैं।

यह किसी फंक्शन का दृश्य है जहाँ पर पूरा हॉल --

यह एक साइकिल की दूकान का दृश्य है जिसमें कुछ लोग साइकिल खरीद रहे हैं।

यह एक फोटो स्टैंड का दृश्य हैं जहाँ पर कुछ लोग अपने बच्चो के साथ खड़े हुए हैं।

खड़ा है और एक गाड़ी भी खड़ी हुई है।

यह एक सड़क का दृश्य है जहाँ पर चारों तरफ़ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए है।

यह किसी एक घर के बहार का दृश्य है जहाँ पर एक छोटा सा --

कुछ फसल उगाई गई है।

यह किसी पार्लर का दृश्य हैं जिसमें की एक लड़की अपने बालो की कटिंग करवाने के लिए बैठी हुई हैं।

कस्टमर का वेट कर रहा है और--

दूसरा रिस रिक्सा खाली खड़ा है।

साइकिल पर चल रही है सड़क के किनारे पर कुछ--

यह एक जिम का दृश्य है जिसमें--

काफी सारी मशीने लगी हुई है जिम करने की लेकिन अभी यहाँ पर --

और इसके पास में बहुत बड़े बड़े भी पौधे लगे हुए हैं और दूर --

यह एक बुक स्टॉल हैं जहाँ पर कुछ स्कूल के बच्चे अपनी बुक्स बाय कर रहे हैं।

छोटे-छोटे पौधे लगाए गए हैं और दूर__

बड़े बड़े पोधे भी उगे हुए हैं पेड़ उगे हुए हैं।

लगाया गया है बट यहां पर कोई बच्चा इसमें खेलने के लिए अभी नहीं है।

वो एक साइड में एक गाड़ी भी--

यह एक गार्डन का दृश्य है जिसमें बच्चो के--

डेकोरेटेट किया हुआ है और इसके अंदर--

लेडिज भी हैं और कुछ बच्चे हैं।

ये एक गाड़ी भी खड़ी है और यह गुरुद्वारे के बहार का कोई मैदान की जगह है।

छोटे छोटे कमल के फूल भी उगे हुए है।

जो कि बहोत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं।

दूकान है जहाँ पर कुछ लोग--

प्रोडक्ट जोकि हो पायगा अगर यहाँ वो दे रहा है।

नीले कलर का स्विमिंग पुल में भरा हुआ है और कुछ--

लेकिन यहाँ पर अभी कोई नही है यह खाली है।

यह एक दूकान है जिसमें की सभी प्रकार की चीज़े --

रखी हुई है बेचने के लिए जिसमें--

रात के समय घर जहाँ पर गुरूद्वारे में--

किताब भी रखी हुई हैं सेल्फ़्स में--

और इसके किनारे घर कुछ घर भी बने हुए हैं और--

क्या दृश्य है जहाँ पर कुछ लोग--

यह एक इलेक्ट्रॉनिक की समान की दूकान हैं जहा पर इलेक्ट्रॉनिक का सभी समान--

बड़े बड़े पेड़ उगे हुए हैं और उसमें--